यह एक स्कूल है इस स्कूल में बच्चों को कराटे --

यह एक मस्जिद है मस्जिद के किनारे हरियाली है और छोटे छोटे मकान वगैरा यहां पर बने हुए है।

और मेज कुर्सी लगी हुई है। मेज कुर्सी के ऊपर छतरी लगी है और कुछ लोग यहां पर खड़े हैं और बैठे हैं।

चारों तरफ बिजली लगी हुई है यह देखने में अत्यंत सुंदर है।

चारों तरफ जाली लगी हुई है अंदर सुंदर सा पार्क है।

उन्होंने अपने दोनों हाथ में मुरली पकड़ी है।

यह एक बहोत बड़ा घर है घर के चारो ओर खुला मैदान है घर का रंग पीला है।

घर के चारों ओर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ लगे है।

यह एक लकड़ी के लट्ठे की दुकान है।

यह एक गाँव है गाँव में कुछ घर बने हुए हैं।

काली सफेद लाल कुछ आदमी यहाँ पर खड़े मछलियाँ खरीद रहे --

यह एक नदी है इस नदी में कई तरीके के नाव हैं।

यह एक कमरा है इस कमरे में एक सेंटर टेबल है टेबल के चारों तरफ चार कुर्सियां हैं दरवाजा है।

यह दुकान है अशोक स्वीट्स और नमकीन कॉर्नर की--

यह एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर दो पेट्रोल पंप हैं।

यह एक पार्क है इस पार्क के किनारे लकड़ी की रेलिंग बनी हुई है उसके ऊपर गोलाकार छतरी है।

यह महाराजा प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर फोटो फोटो स्टेट लेमिनेशन रिचार्ज --

यह एक इस्कूल की बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर तीन बड़ी बस खड़ी हैं।

कुछ आदमी और औरत यहां पर बैठे हैं इस स्टेशन पर टीन सेट डला है।

दीवार से घीरा है उसके पीछे कुछ इमारतें बनी--